यहां पे मुझे खिड़की भी दिख रही है।

और अलग अलग कलर के अलग अलग किस्म के मुझे--

नीचे में मुझे बकेट भी दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे बड़ा सा बिल्डिंग दिख रही है यहां पे मुझे खिड़कियां सब भी दिख रहे हैं । और लाइट भी जलती दिख रही है।

और सामने में मुझे बड़ा सा बिल्डिंग भी दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ी सा मुर्गी दिख रही है जो कि पर्पल कलर की है और व्हाइट कलर की है और उसकी भी आँख दिख रही है।

यहां पे मुझे खिड़की भी दिख रही है और सामने में मुझे इंसान लोग भी दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे बड़ा सा बिल्डिंग दिख रही है।

और कुछ फ्लावर पॉट भी दिख रही है जो की वाइट कलर के हैं और उसके ऊपर मुझे वो जरा पौधे भी दिख रहे हैं।

यहाँ पे मुझे दरवाजा भी दिख रहीं है।

इस तस्वीर में मुझे एक रूम दिख रहे हैं।

कमरे में मुझे ब्लैक कलर के बैग भी दिख रहे हैं।

और सामने में मुझे बहुत सारा इंसान लोग भी दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे बड़ा सा रस्ता दिख रही है।